यहां बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं ब्लू कलर के और यहां पेड़ भी लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर-सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

येलो कलर के बोहोत सारे गेंदे के फूल रहे हुए हैं । पीले--

यहाँ पर एक बड़ा सा जंगल है।